ये हमें यहाँ कुछ गाड़ियां पेट्रोल भरते हुई नज़र आ रही है और पेट्रोल भरने के लिए जाती हुई नज़र आ रही है।

अंदर की ओर एक अशोका चक्र बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ हमें कुछ झंडे टंगे हुए भी नजर आ रहे है आस-पास पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ हमें सीमेंट के बने हुये हैं। चेयर देखने को मिल रहैं हैं जहाँ लोग बेठ कर आराम कर सकते हैं। वही आस-पास हमे बहुत सारे पेड़ और कुछ पोधे भी दिखाई दे रहैं हैं।

दृश्य एक मौल का हैं। जहाँ हमें थान के कपड़े देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पोस्टर्स भी टांगे गये हैं। देखने में यह दुकान काफी स्टैंडर्ड् लग रहा हैं। हमें यहाँ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

एक पेट्रोल पम्प का है जहां हमें दो पेट्रोल बूथ दिखाई दे रहे हैं| यहाँ हमें कुछ गड़ियां पार्क की हुई नजर आ रही हैं।